अ ये एक स्टेशनरी शॉप लग रही है जहां पे बहोत सारे आ पेन दिख रहे हैं।

इसका फेस जो है इस बंदे का वो ब्लर आ रहा है वहां पे बहुत किस्म के फूल है येलो कलर के दिख रहे हैं पर्पल है।

और वहां पे बोहोत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं इन फव्वारों की तरफ और यहां पे कुछ लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं।

यहां पे कुछ फंक्शन जैसा लग रहा है वहां पे ये टेंट वेंट लगाया हुआ है जो कि व्हाइट और पिंक कलर का है उसपे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।